और सब जो है ये लोग दोस्त लोग है हँस रहे हैं इस्माइल देते हुए फोटो खि फोटो खिचवा रहे हैं और सैलून भी अन्दर में शायद एक नजर आ रहे हैं।

और ई लोग चारो इसको लेके खड़े हैं और बहुत ही अच्छा झोपड़ी बना है जिसमे पेड़ और खिड़की सब दिया हुआ है| सब लड़कियां मिलके बनाई है।

जिम कर रहे हैं एक और ये लाल कलर ये देखिये बहुत सारे जगह पर बने हुए हैं और सुबह-सुबह का समय है।

यह रेलवे स्टेशन है यहां पे दुकाने है| सुधा का दुकान है जिसमें सुधा का सारा आइटम मिलता है।

और एक साइड में हाथ आगे किये हुए खड़ी है शायद कुछ लेने के लिए और एक लेडीज बूढ़ी भी खड़ी है।

'' यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता चल रही है और लड़के लोग हैं और मेम भी है सायद कुछ बनाने दिया गया है| सब अपने-अपने काम कर रहे हैं सभी अपने कामों में मगन हैं। ''

यह एक पूजा स्थल लग रहा है।

अ सब म कुदाली लेके खड़े भी हैं एक ऐसे ही देख रहा है| एक कुछ पाइप से काम कर रहा है।